कुआँ से सब कुआँ में से पानी निकाल के सब पानी पीते हैं अपना प्यास बुझाते हैं।

फूल चढ़ाने जाते है मंदिर में मंदिर एक बहुत अच्छा जगह हैं।